यहां पर आप देख सकते हो ल_सी_डी लगी हुई है यहां पर आप देख सकते हो--

गमलों में फूल पेड़ फूल फूल लगे हुए हैं देखने मे बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये जो मशीन सी है ये मशीन ब्लैक कलर कि है।

सेल अमूल यहां पे पेन वगैरह जैसे--

यहां पे लाइट का बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है।

यहां पे बहुत सारी गाय बंधी हुई हैं और यहां पे ऊपर इनके ऊपर--

और यहां पे आप देख सकते हो कुर्सियां ही कुर्सियां रखी हुई हैं।

यहां पे आप देख सकते हो चारों तरफ है।

और यहां पे आप देख सकते हैं। ये दिख रहा है जैसे कोई यहाँ पे--

यहां पर आप देख सकते हो ये कपड़े धोने की मशीन रखी हुई है।

और यहां पे ऊपर आसमान दिख रहा है ये फूड़ है नीले रंग का फुड़ है यहां पे इनपे नीले लंग का नीले रंग का पेंट किया हुआ है।

यहां पे देख सकते हैं यहां पे हर तरह का सामान मिलता है यहां जैसे--

गुब्बारे कई रंग के हैं लाल रंग का भी गुब्बारा है सफेद रंग के भी गुब्बारे हैं बैंगनी कलर के भी गुब्बारे हैं।

इसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं और वहा दूसरी तरफ भी एक आदमी खड़ा हुआ है।

खाने के डिब्बे भी रखे हुए हैं।

ये गाड़ी खराब हो रही है। इस गाड़ी के पहिए निकाल रखे हैं। दो निकाल रखे दो है।

और यहां पे आप देख सकते हो एक आदमी खड़ा हुआ है इस गाड़ी के टायर निकाल रखे है।

और यहां पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहां पे घास भी लगी हुई है।

कुर्सियां रखी हुई हैं मेज रखी हुई है बीच में मेज रखी हुई है दोनों साइड --

चंचल लिखा हुआ है यहां पे आ--